यहां कुछ घर दिखाई दे रहे हैं आस पास कुछ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है और आसपास एक रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे --

यहां पर कोई पार्टी चल रही है जिसके अंदर कुछ औरतें और कुछ आदमी घूम रहे हैं और आसपास रंग बिरंगे सफेद और चमकीले गुब्बारे लगे हुए --

पुट्टी नीले कलर की है और इसके आगे कुछ पौधे लगे हुए हैं जिनके ऊपर है वाइट फूल है।

और आसपास में बहुत सारी दुकानें भी है उसके आगे एक कच्ची रोड निकल रही है और आसमान साफ है व्हाइट दिखाई दे रहा है जो कि --

पास में ट्रांसमीटर का खंबा दिखाई दे रहा है पास में एक बहुत बड़ा पुल जा रहा है और ऊपर आसमान साफ दिखाई दे रहा है जिसके आसपास कुछ --

और ऊपर पंखा चल रहा है बहुत सारी लाइटें जली हुई है और लकड़ी की अलमारियों के अंदर कपड़े सजाए हुए हैं।

बहुत बड़ा जनरेटर दिखाई दे रहा है और उसके आगे एक इंडिया पोस्ट पेमेंट का बोर्ड लगा हुआ है जो कि --

और पास मे एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है पास में घर भी दिखाई दे रहा है और एक खंभा लगा हुआ है जिसके ऊपर एक मीटर लगा हुआ है बोहोत सी तारे निकल रही है।

यहां पर सब्जी की रेड़ी लगी हुई है उसके ऊपर बैंगन टमाटर खीरा --

यहां पर एक वाइट कलर की कार खड़ी दिखाई दे रही है उसके पास में एक आदमी है जो किसी से पर हाथ रख के खड़ा है।

बोर्ड पर मोबाइल्स लिखा हुआ है और एक के ऊपर कादरी टूर एंड ट्रेवल्स लिखा हुआ है पास में कुछ दुकानें और भी दिखाई दे रही है।

बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर सैनिक साइकिल मार्ट लिखा हुआ है और बाहर एक गाय है और एक उसके पास पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक वॉलीबॉल ग्राउंड दिखाई दे रहा है और आसपास कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे भरे हैं और उनके पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

जिसके अंदर बहुत सारे लाइटें जल रही है और एक पोड़ी भी बनी हुई है और बहुत सारे डब्बों में जूते जुटाए हुए हैं।

कुछ पिक्चर्स भी लटक रही हैं और कुछ हेंगर परचे सल्टें भी लटक रही--

जैनिक स लाइब्रेरी लिखा हुआ है इसके अंदर दीवार की कुछ अलमारियां बनी हुई है।